ये तीन फ्रेंड्स लग रहे है एक कैप पहना हुआ हैं तीनो एक दूसरे का हाथ पकडे हुए है दो ब्लू टी शर्ट पहने हुए हैं एक वाईट टीशर्ट एन्ड मी सॉरी एक--

ये कोई मस्जिद का पिक लग रहा है जहा काफी बेलून लगे हुए है एक लड़का जो ब्लैक कलर का कुर्ता और वाईट ये यलो कलर का दुपट्टा ग्रीन कलर का दुपट्टा लिए हुआ है।

यह परिसदन नाम से लिखा पेंट किया हुआ है परिसदन जय माता दी और यहाँ बोहोत बड़ा बॉन्डिंग किया हुआ है आसमानी कलर से एक गेट बहुत बड़ा--

काला रंग का गेट लगा हुआ है गेट के सामने रोड बनी हुई है उसके बगल में पेड़-पौधे है ऊपर से तार गया हुआ है ऊपर आसमान दिख रहे--

सारे ग्रीन ग्रीन ऐ पेड़ पोधे दिख रहे है और जाने का रास्ता भि है पहाड़ी इलाका है।

ये यहां पे एक पहाड़ दीखता है वहां पे एक टेम्पल दिख रहा है वहां पे झोंपड़ी दिख रहा है बहुत सरे आदमी है यहाँ पे एक एक अदृश्य इतना खूबसूरत दृश्य है देखने मैं काफी अट्रैक्टिव है ।

कुछ रेड रेड कलर के दिख रहे है पोधे कुछ हरे-हरे कलर के पौधे दिख रहे है कुछ सूखे पोधे दिख रहे हैं।

हरे भरे पेड़ पोधे दिख रहे है और पोल दिख रहा है अम्म्म रेड कलर के फूल है ग्रीन से पेंट किया हुआ है।

अत- ता ओटो मोबाइल्स हुआ लिखा है उम्म्म उमा और ऐ -सामने वाइट कलर का है और ऊपर इट का बनाया हुआ रेलिंग है।